मिरर है और ऊपर कुछ बैलून लगी हुई है और कुछ उजला कलर के पंखे भी है।

सामने एक बड़ा सा बिल्डिंग देखने को मिल रहा है जो उजला कलर से पेंट किया गया है।

सामने एक टेबल रखी हुई है नीचे में टाइल्स लगी हुई है टाइल्स उजला कलर का है।

ऊपर आसमान है आसमान नीले कलर का है और एक पेड़ भी देखने को मिल रहा है अर--

और कुछ तकिया भी देखने को मिल रहा है और एक वेंटिलेटर भी लगा हुआ है।